यहां पे एक बहोत बड़ा घर बना हुआ डिजाइन में घर बनाया गया है।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं यहां पे कुछ बनाया गया है पान--

यहां पर चार पांच गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहां टेंपू भी दिखाई दे रहा है गाड़ी भी दिखाई दे रहा है यहां मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है बहुत व्यक्ति --

यहां पे एक बहोत बड़ा होटल है यहां पे बहोत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है।

टी_वी भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक लड़के का बाल कटा हुआ दिखाई दे रहा डिजाइन में--

कांच वगैरा लाइटें वगैरा दिखाई दे रहे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर व्यक्ति बैठे हुए यहां प बहोत बात कर रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे दुकान लगे हुए है यहां पे बहुत सारे।

कंपनीया बनाया है। यहां पर कुत्ते का इलाज हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है। यहां पर व्यक्ति दो खड़े हुए है।